यहा पे बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं।

ओर उसके बाद दो जेंस है जो पट्टी कर रहे हैं जो डॉक्टर लोगो होगे ।

और दराज पे बैग एक सूट बैग रखा सूट से बैग रखा हुआ है उसके बाद एक पानी का बोतल रखा हुआ है।

मार्केट में बहुत सारा बिजली का तार है जो ऊपर से घया हुआ है।

इसमें चारों तरफ से घर है बोहोत अच्छा थी से डिज़ाइन किउआ हुआ है सो प्लांट से--